और यहां वाइट कलर की कार है।

और बगल में एक घर--

और वाइट कलर का गद्दा लगा हुआ है और वाइट कलर का दो तकिया है।

और काफी पीछे में लाइट वगैरा इस लगा हुआ है और दिखने में भी काफी बहुत अच्छा लग रहा है।

और गेट खुला हुआ है।

और यहां पे लेडिस का साड़िया मिलता है।

यह एक जिम हाल है यहां पे काफी सारे बैलून वगैरा भी लगे हुए हैं।

यहां गाएं कि खटाल है जो कि यहां पे दो गाए जो ब्लैक एंड व्हाइट है।

और बगल में वे और गाय है।

और उसके बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ है।

जिसमें काफी सारे लोग हैं जो पानी में मजे कर रहे हैं।

और देखने में भी काफी सुंदर लग रहा है।

बिल्डिंग के नीचे काफी सारी गाड़ियां भी लगी हुई है।

और बगल में टेबल भी लगे हुए हैं और कुर्सी भी रखा हुआ है बगल में ।